ड्रिल मशीन चला रहा है।

जो कि बहुत सारी ये चीजें हैं।

जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रही हैं।

आ लोग फुटबॉल खेलते हैं।

यहाँ डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं।

जो कि लाम गांव में है।

कि यहाँ बहुत से घर बने हुए हैं।

और यहाँ बहुत से लोग भी हैं।

बाइक भी खड़ी हुई है।

लैब चार्ज का स्थान है।

और कैची पैन रखा हुआ है।

और यहाँ बहुत सा सामान --

जैसा कि हम इस फोटो में देख रहे हैं --

रॅनबो भी दिख रहा है।

यह एक तीन सेट से बना हुआ --

और सेल्फी भी खींच रहे हैं उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं।

इसमें आपको किसी का स्टेचू दिख रहा है।

क्योंकि मगर का फोटो दिख रहा है।

कि यह एक रेड कलर के रोज हैं।

उसके चारों तरफ पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

पार्लर में बहुत ही अच्छी दिख रही है।

कि यह एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है।

यह शॉप बहुत ही अच्छी दिख रही है।

जो कि नीचे से ऊपर तक की रखी हुई है चेयर्स ऑडियंस भी बैठी हुई है।

यह जो फोटो आपको दिख रहा है उसमें एक पिलर बना हुआ है।

जिसके दर्शन करने के लिए बहुत से सैलानी लोग --

यहा बहुत से कलर के पैरट है।

जो कि पिंजरे में है।

जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक चट्टानों से बना हुआ --

पियानो शो हो रहा है।

घर भी दिख रहा है।